इस पहाड़ का दृश्य बना हुआ है तथा यहां पे काफी सारे पहाड़ है यहां पे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं हरे भरे नजर आ रहे हैं यहां पर बहुत सारे लोग भी हैं जो अनेक कलर कपड़े पहने हुए हैं।

ये एक गार्डन का दृश्य बना हुआ तथा यहां पे काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं फूल्स भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक छोटी सी पेड़ नजर आ रही है पूरा कलर का ग्रीन है इसमें कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं।

ईट सीमेंट लकड़ी के समान पाइप वगैरह सब नजर आ रहे हैं।

यह एक लोहे फैक्ट्री का दृश्य बना हुआ है यहां पर लोहे लोहे के काफी सारे सामान नजर आ रही है यहां पर बड़ा सा सोलर भी नजर आ रहा है नीचे एक और टाइल्स लगी हुई है।

यहां पे काफी सारी लाइट्स लगी हुई है यहां पे बड़ा बड़ा मशीन है जिसका कलर रेड और ब्लू है।

अनेक कलर के कपड़े पहने हुए हैं यहां पे सब काम करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं कुछ खड़े हैं।

रड बालू छरी यह सब के माध्यम से छत ढला रहा है साइड में वाइट कलर का बिल्डिंग है ।

ये एक ग्राउंड का दृश्य बना हुआ है जहां पे बच्चे लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

फैक्ट्री कलर व्हाइट है फैक्ट्री का अंदर मशीन भी नजर आ रही है।

और एक बाइक एक स्कूटी लगी हुई है घर की कलर व्हाइट और रेड है।

आसमान की कलर व्हाइट यहां पे दूर में नदी नजर आ रही है जिसमें पानी नजर आ रहा है।

डब्बे हैं जो व्हाइट कलर के यहाँ पे पेड़ भी नजर आ रही जो हरा भरा नजर आ रहा है।

कुछ टीचर्स लोग नजर आ रहे हैं जो अनेक ड्रेस में है।

ईंट के मदद से दीवार ही बने हुए हैं।

ये एक मस्जिद का दृश्य बना हुआ है जो बनते हुए नजर आ रहे हैं सीमेंट के मदद से।

सड़क पे एक अंकल जाते हुए नजर आ उनके कपड़े के कलर व्हाइट और ग्रे है।